तालाब के आसपास कुछ कचरा भी पड़ा हुआ है और कुछ घर भी दिख रहे हैं घर के आसपास पेड़ पौधे और घरों का रंग पीला नीला हरा है।

इस इमारत पर पीला हरा रंग का उपयोग किया गया है| नीचे कुछ कांच के खिड़किया और दरवाजे भी लगे हुए है| बाहर तीन वाहन खड़े नज़र आ रहे हैं|

यहाँ पर एक नल छोटी-सी नदी दिख रही है नदी के पास एक अ-- बड़ी-सी घर दिख रही है।

यहां पर एक मैदान में एक गाड़ी के आगे एक महिला खड़ी नजर आ रही है ऊपर लाल रंग का इमा इमारत दिख रहा है।

पहाड़ पर भी कुछ पेड़-पौधे दिख रहे हैं।

इमारत के ठीक नीचे ही कुछ दुकाने नजर आ रही है दुकान के बाहर बहुत सारे वाहन दिख रहे है वाहन का रंग सफ़ेद काला है।

यह पेड़ छोटे-छोटे लाल रंग के गमलो में लगा हुआ है और यहाँ पर नारियल का पेड़ भी दिख रहा है।

यहाँ पर एक बड़ी-सी ईमारत दिख रही है ईमारत के आगे एक लम्बा सा खम्भा भी दिख रहा है खम्बर खम्बे पर सफ़ेद रंग की बत्तियाँ लगी हुई है।

इस चित्र में अ एक इमारत दिखाई गई है इमारत में बहुत सारे खिड़कियां नजर आ रही है और इमारत के पास ही एक झंडा भी लगा हुआ हैं।

अंदर बहुत सारे अलमारियों में दवाई रखे गए है ऊपर टिने भी लगे हुए है।

नीचे कुछ कांच के अल्मारियां भी रखे हुए हैं।

इस चित्र में एक बड़ी सी इमारत दिख रही है इमारत के नीचे कुछ दुकाने नजर आ रही हैं।

यहाँ पर एक बाजार का चित्र दिखया गया है इस चित्र में कुछ इमारते नजर आ रही हैं।